इस चित्र में कुछ लोग दिख रहे हैं यहां ग्रीन फ्लोर दिख रहा है यहां एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग भी बनी हुई दिखाई दिख रही है।

इस चित्र में एक रोड दिख रहा है यहां कुछ बिल्डिंग्स दिख रही हैं यहां कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

इस चित्र में एक बड़ा मैदान दिख रहा है यहां कुछ लोग खेलते दिख रहे हैं यहां बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

इस चित्र में एक बड़ा कैफे दिख रहा है यहां बहुत सारी चेयर और टेबल दिख रही हैं।

इस चित्र में दो लोग दिख रहे हैं यहां एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है यहां एक रोड दिख रहा है यहां कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

इस चित्र में एक बड़ा सा प्ले ग्राउंड दिख रहा है यहां बहोत सारे पेड़ भी लगे हुए दिख रहे है यहां एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है यहां बहोत सारे झूले भी दिख रहे है।

इस चित्र में एक वाइट कलर का पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है यहां कुछ बच्चे डांस करते हुए दिख रहे हैं यहां एक ग्रीन कलर का फ्लैग भी दिख रहा है।

इस चित्र में एक रेड टॉप एंड टाउन दिख रहा है यहां एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है यहां बहुत सारे लोग भी खड़े हुए दिख रहे हैं।

इस चित्र में बहोत सारी बुलेट खड़ी दिख रही है यहां एक कांच का फ्रेम भी दिख रहा है यहां एक फोटो फ्रेम दिख रहा है यहां एक चेयर भी रखी दिख रही है।

इस चित्र में टॉयज की एक बड़ी सी दुकान दिख रही है यहां बहुत सारे टॉयज भी रखे हुए दिख रहे हैं यहां एक स्कूटी भी खड़ी हुई दिख रही है।